नीचे कालीन बिछी हरे रंग की तथा एक बॉस खड़ा हुआ है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तथा पिलर खड़े सफेद रंग के।

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर ये रोड है जो कि स्लेटी रंग की है इतने में यहाँ पे कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है।

कव लाल रंग की कुर्ती तथा ऊपर मफलर बाँधा हुआ है।

जैसा की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर हरिद्वार सी शिव सोन सोन --

और यहाँ पर ये भूरे रंग का पत्थराव टाइप में।

जुगनू और स्लेटी रंग के चमकदार --

अ जग्गू आदमी आदि कार्टून बने हुए है।

अनार आदि फल लगे हुए है तथा यहाँ पर ओरेंज अ-अ --

जैसा की मै यहां पर देख पा रही हूँ यहां पर एक रात्रि का समय --

काउंटर सफेद रंग का बहोत सारा समान है यहाँ।

जोकि भुरे रंग के गमले रखे हैं भुरे रंग के फर्श जो है स्लेटी रंग--

यहाँ पर इसमें आगे बहौत सारे पेन लगे हुए हैं युपीएससी का नोट्स लिखा हुआ है तथा एक बै --